इस तस्वीर में एक नदी दिखाई रही है पीछे दो नाव दिख रही है।

और दो नंबर लिखा हुआ है और नीचे आग बुझाने का सामान रखा हुआ है कुछ बाल्टियां रखी है एक ट्रक खड़ा हुआ है।

ये किसी घर की कालोनी के आगे या पीछे का हिस्सा है जहाँ पर एक --

नीचे कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं और सिंडिकेट बैंक का ए.टी.एम. दिख रहा है जो कि अभी उसका शटर बंद है दुकान बंद है।

ईंटों की नहीं है पत्थोरों की दीवार है।

हरा कल हरियाली-हरियाली दिख रही है कचरा फेंकने का डब्बा है वहाँ पर।

यहाँ एक नीला आसमान दिखाई दे रहा है।